और यहाँ पे हर तरह के डिजाइन से बाल को काटा जाता है फ़ेशियल किया जाता है अच्छा तरीका से और यहाँ पे बहुत ही कम दाम में बाल को काटा जाता हैं।

और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चिकन मिलता है इसलिए लोग आते हैं दूर-दूर से चिकन खरीदने के लिए यहाँ का चिकन --

फैसिलिटी भी उपलब्ध है यहाँ हर तरह के डिजाइन से बाल को काटा जाता है अच्छी --